यह बिल्डिंग बहुत ही बड़ी है यहां चारों ओर खेत--

एक बहुत ही बड़ा बिल्डिंग है यहां एक बहुत ही बड़ा फील्ड है जहां बहुत सारे घासे हैं बहुत सारे हरे भरे घास है और कुछ छोटे-छोटे पौधे भी है यहां कुछ बड़े-बड़े पेड़ भी है।

यहां बहुत सारे हाई लेवल तारे खींचे गए हैं एक सुंदर सा रास्ता भी है।

यह झुमावती हॉस्पिटल है ये बहुत ही बड़ा है यहां बहुत सारे हाई लेवल तारे खींचे गए हैं एक बड़ा सा पेड़ है और बड़ा- बड़ा गेट है यहां एक बहुत सारे पोस्टर लगाए गए हैं सब दुकानों में शटरे गिराई गई है।